इस चित्र में एक आदमी एक गाड़ी की मरम्मत करता हुआ दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में कुछ लोग अंदर की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में सौंदर्य निखार को स सामने की ओर से बहुत सुंदर गुब्बारों से सजाया गया है।

यह एक ए.टी.एम. के बाहर का चित्र है।

एस.बी.आई. ए.टी.एम. लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

बैंक के बाहर की तरफ नीले रंग के बॉर्ड पर फेडरल बैंक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

आगे की ओर एक ऑटो जा रहा है।

द जावेद हबीब सैलून लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

अपोलो डायग्नोस्टिक्स लिखा हुआ नजर आ रहा है।

बहुत से मोटर साइकिल और स्कूटर खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में दो मोटर साइकिल खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

इस बैनर पर अमृत नर्सिंग होम लिखा हुआ नजर आ रहा है।

इस केक को अच्छे तरीके से सजाकर मेज के ऊपर रखा गया है।

पीछे की तरफ एक स्कूटर खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

यह एक होटल के बाहर का चित्र है।

इस चित्र में एक लाल रंग के मेज के आसपास चार कुर्सियाँ लगी हुई नजर आ रही हैं।

वहीं दुकानदार उनको सम्मान देने में व्यस्त नजर आ रहा है।

यह एक होटल के अंदर का चित्र है।